लोहा का गेट लगा हुआ है दोनों साइड से गेट अभी खुला हुआ है।

किराना स दुकान है बहुत कुछ है इस दुकान मे बॉर्नविटा है हॉर्लिक्स है।

नीचा में टाइल्स रखा हुआ है बहुत समान है ढेर सारा समान है पैकिंग किया हुआ है बिस्कुट के अंदर क्या है पता न --